रास्ता है शट्टर है जीने है फ़ेडरल बैंक हे ए_टी_एम है कांच है ज़ीने है गुलदस्ते है फूल है।

यह बड़ा सा कैम्प है बहुत सारी औरते है आदमी है गाड़ियाँ है डंडे है।

खेत है जमीन है घर है खम्भे है लाइटे है।